साइड में एक इलेक्ट्रीक पोस है जोकि काफी बड़ा है।

सबसे नीचे काफी सारे सामान रखा गया है।

टिने का घर भी है औ कच्चा का घर जिसका वॉल बंबू से बनाया गया है।

एक ने सितार पकरा हुआ है एक ढोल और एक कुछ ओर पकर के है।

और सामने एक लाल कलर का टी शर्ट पहन के इंसान खड़ा हुआ है।

उसका चेहरा को पूरा वाइट कलर से कलर किया गया है सामने एक पानी का बरा सा बोटल है।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

आगे काफी सारे हरे रंग के घास हैं।

इस तस्वीर में मुझे कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहे हैं।

साइड में खिड़की है जो की व्हाइट व्हाइट कलर के लोहा से कवर किया गया है।

एक फ्लावर पॉट जिसमें फ्लावर भी है।

दो इंसान चेयर में बैठा हुआ है लाठी पकड़ के।

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में एक सैलून दिखाई दे रहा है।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

सामने एक इंसान है जिसका चेहरा ब्लर किया गया है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर्स रखा हुआ है पीछे फ्लावर पॉट्स भी रखा हुआ है।

जिसका छत टीना से बना हुआ है।

और इंसान काफी सारे इंसान दिखाई दे रहे जो ब्लैक और रेड जैकेट्स में है।

नीचे दो साइकिल है। जिसमें बोतल बना हुआ है।

जिसके अंदर पेड़ और पौधे वगैरा लगाया हुआ है।

एक डस्टबिन ब्लू कलर का रखा हुआ है।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

स्विच बॉक्स है उसमें चार्जर लगाया हुआ है।